एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है पीले रंग की एक व्यक्ति पैसे गिन रहा है जिसके हाथ में पैसे हैं उसने एक चूड़ा भी पहन पहना हुआ है।